अरे वहाँ जो है ना ना प्रकार से काफी लोग का आना जाना रहता है।

हमारे यहाँ बहुत से प्रकार के पुष्प तैयार किये जाते है। बागवानी भी लगाई जाती है। जिसमें नाना प्रकार के पुष्प भी तैयार किये जाते है।

जय माँ देवी यहाँ का एक ग्राउंड है जहां कि किया जाता है | ये बोहत अच्छा ग्राउंड बनाया गया।

ताकि साडी मतलब गाड़िया इस जस्ट साफ कर देता है।

और वहां पर जो है सारेेे बहोत अच्छे-अच्छे पार्कें भी बनाए गये खेलों के लिए। जहां तक देश- विदेश के लोग भी आते है।

और सारी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग और बड़े-बड़े पार्क है और बड़ी-बड़ी --

जो लोग बाहर से लोग भी आते हैं और उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं चिकन रोस्टेड --